फूलों की क्यारियाँ है। बीच में कस्टम बना हुआ है। फौवारा सा टाइप का।

ये जाम लग रहा है जैसे कहीं पे जाम लगा हुआ है। ये नई गाड़ी है जो की मुज्जफरपुर की गाड़ी लग रही है देखने में।

यहाँ पे काम कर रहे मजदुर सभ यहाँ पे खुदाई वुदाई चल रही है खुदाई की काम हो रही है।

बहुत ही अच्छा जगह ---

आप इस में जाके खरीदारी कर सकते हैं। बोहत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको।

देख सकते हैं आप यहाँ कितना खुदाई हुआ क्या हो रहा है। जैसा लग रहा है यहाँ बननेवाला --

ये भी जाम की स्थिति लग रही है देखने में यहाँ पे भी लग रहा है जाम लगी हुई है यहाँ पे खुले-खुले तार है जिससे करंट लगने का डर है।

ये हॉस्पिटल लग रहा है इसमें सिसु सम्बंधित सभी समस्याएं हल की जाती हैं।

ये बास से बनाया गया है बास के लकड़ी से डलिया है फूल-दान है फिर कुछ रखने वाला है बहुत ही अच्छा है। गिर --